ये अच्छा सा लाइटिंग किया गया है| इस रिंग में ढेर सारा सामन रखा हुआ है| एक आइना भी लगा हुआ है | काफी बढ़िया दिखने में लग रहा है | उजला लाइट भी लगा हुआ है नया जिम है।

ये किसी कोचिंग के ऑफिस का फोटो लग रहा है। काफी साफ सुथरा फोटो लग रहा है। बहुत बढ़िया ऑफिस लग रहा है दिखने में इस ऑफिस को पर्दे से घेरा गया है।

निचे मैं लाल रंग का नेट लगा हुआ है। देखने मैं काफी सुन्दर और आकर्षित जिम लग रहा है और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और कुछ जिम कर रहे हैं।

यह होटल का फोटो है | यह शायद काफी नया होटल लग रहा है देखने मैं और काफी बढ़िया होटल लग रहा है। होटल के चारो तरफ ढेर सारी लाइटे लगाई गयी हैं ।

ये जिम है जिम खुला है काफी बढ़िया जिम लग रहा है देखने में ये जिम के नीचे मे मैट लगा हुआ है काफी बढ़िया जिम है नीचे मे लाल रंग का मैट लगा हुआ है और चारों तरफ बैलून भी लगा हुआ है।

ये कहीं की प्लेग्राउंड का फोटो लग रहा है काफी बड़ा प्लेग्राउंड लग रहा है देखते ही और हरा-भरा मैदान है।

इस मैदान के चारों तरफ एक सा तिरपाल लगा हुआ है और काफी खिलाड़ी खेल रहे हैं और कुछ खिलाड़ी घूम रहे हैं काफी बढ़िया दिन का नजारा लग रहा है यहाँ पे।

कुछ लोग बाइक चेक कर रहे हैं काफी साफ सुथरा लग रहा है देखने में कुछ लाइटे लगी हुई है कुछ बैनर लगाया हुआ है यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है।

ये कहीं के चलता-फिरता हॉटल है यानि कि चार पहिया वाहन के द्वारा इसको नियमित रूप से चलाया जाता है।

इसलिए इसमें ढेर सारा बैलून रखा गया है और यहां पर दो तीन लोग खड़े हैं दुकान पे और दुकान के बहार में एक साइकिल और एक मोटरसाइकिल लगा हुआ है।

और शायद दुकाने भी बंद है सबेरे का समय है इसलिये सारी दुकाने बंद है।